मुझे इस पिक्चर में बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा डब्बा है।

मुझे इस पिक्चर में दो ठो चेयर दिखाई दे रहा है दो ठो टेबल दिखाई दे रहा--

एक ठो फ्लावर दिखाई दे रहा है और दीवार में भी बहोत सारा कुछ चिपका के है।

दो ठो स्कूटी स्टैंड करके है।

मुझे इस पिक्चर में मूर्ति दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा है और ऊंचा ऊंचा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और दो ठो पिलो है व्हाइट कलर मे--

मुझे इस पिक्चर पे एक दुकान दिखाई दे रहा है उसमें लिखा हुआ है वीवो ।

और बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है।

अंदर में फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है छोटा सा।

एक व्यक्ति है कोई खड़ा करके है और वो काम कर रहा।

और बंबू दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारा सोफा दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

और उसमें बहोत सारा पोस्टर भी चिपका के हैं।

एक सोफा दिखाई दे रहा है उसमें एक आदमी भी बैठ के है और एक ठो दरवाजा दिखाई दे रहा है।

जिस पिक्चर में एक बरंदा दिखाई दे रहा है उसमे बहोत सारा फ्लावर पॉट है और सुंदर सुंदर फ्लावर है।

बहुत सारा खिड़कियां दिखाई दे रहा--

इस पिक्चर मे बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पोस्टर लगा के है।

आदमी बैठने का सीट भी दिखाई दे रहा है और सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

अंदर सुंदर मूर्ति दिखाई दे रहा--

मुझे इस पिक्चर पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही येलो कलर में।

ज्यादा से दिखाई दे रहे हैं।

लोग दिखाई दे रहा है और एक ठो प्लास्टिक दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक रूम दिखाई दे रहा है उसमें चेयर है टेबल है टेबल के ऊपर में कुछ किताबें हैं।

और पंखा भी दिखाई दे रहा है लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

दीवार मे बहुत सारा फ्रेम चिपका के है।

मुझे इस पिक्चर पे चर्च दिखाई दे रहे हैं।

जिस पिक्चर में तीन ठो आदमी दिखाई दे रहा ब्लैक कलर में पेंट किया हुआ है।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

में बहुत सारा गच्छे लोग दिखाई दे रहे और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग और खिड़की भी दिखाई दे रहा--

सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और आसमान दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा ग्रास दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है।

पत्थर में भी कुछ वर्ड लिख के हैं वाइट पेंट से और बहुत अंधेरा से हैं।